और ऊपर से बिजली का तार गया और पीछे एक बड़ा बिल्डिंग हैं।

ये एक यामाहा बाइक का शोरूम है और बहोत सारा एक मोटर साइकिल लगी हुई है एक मोटर साइकिल --

पीला बस दिख रहे हैं और बोहोत सारे ल लड़के सामने खड़े हैं --

एक टोटो है जोकि जिसका छत रंग का लाल है।

बोरे रखे हुए हैं गुलाब फूल के और उस साइड छह सात पौधे हैं दो पानी पड़ाने वाला है।

मिट्ट मिट्टी दिख रहा है और पानी पड़ाने वाला नीला रंग का है।

एक होटल का कमरा है जिसमें गद्देदार गद्दा चादर पे मतलब व्हाइट चादर --

और आगे एक लाल रंग का मोटर साइकिल है और सामने का छत टीना का है और ऊपर --

अह कुछ समान लटक रहे हैं और उसके सामने कुछ बिल्डिंग सब है।